एक फर्श है फर्श के उपर एक सोफा रखा है कत्थे रंग का और उसके पीछे कबर्ड है साइड में भी एक--

बाहर दो काले रंग की गाड़ियां है जिसपे एक बैठे हुए है एक खिड़की है।

पीछे एक काले रंग की छतरी है एक नीले रंग की छतरी है। उपर बादल है।